और एक आदमी है जो बिल्डिंग और देख रहा है और एक आदमी है जो बिल्डिंग की और जा रहा है।

के अंदर तीन आदमी बेठे हुए है और जो सफेर् रंग की ड्रेस पहेने हुए है सामने एक मूर्ति है मूर्ति के अगल बगल लाईट लगी हुई है।

सामने फिसलने वाला एक झूला लगा हुवा है जो लाल रंग का है सीडी चढ़ने बाली है जो लाल रंग की है और हरे रंग के खम्भे है।